यहाँ पर टैम्पू खड़े हुए हैं रेड कलर का --

किसी ने रेड कलर के जौकेट पहनी है। किसी ने म् ब्लैक कलर की स्वेटर पहना हुआ है।

ये एक तालाब है। इसमें बहुत शारा पानी भरा हुआ हे ।

एक भगवान बैठे हुए है ऊपर और नीचे बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं।

यहाँ पर बहुत शारे लोग खड़े हुए हैं। अ किसी ने साड़ी पहनी हुई है येलो कलर की किसी ने शर्ट पहनी है ब्लैक बाइट किसी ने ब्लैक पहनी है शर्ट ।

ये एक दुकान है इसमें बहुत सारा समान रखा हुआ है इसमें फल-फ्रुट भी रखे हुए हैं।

एक गाड़ी खड़ी हुई है उसके पास में एक पुरुष खड़ा हुआ है जिसने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है।

यहाँ पर एक गैट है और उसके ऊपर --

ग्रीन ग्रीन और यहाँ पर बहुत शारी दुबा दिख रही हे मैदान में ।

और लकड़ी का कुछ बना हुआ है इधर।

ये एक बिल्डिंग है इस पे कलर पुते हुए हैं और इसमें बहोत शारी विंडो दिख रही है।

यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है। मोबाइल में कुछ कर रही है। मोबाइल से --